दो औरतें यहां पे पोल के पास खड़ी हुई हैं और दो आदमी पूल के पास खड़े हुए --

ये एक रेस्टोरेंट है और यहां पे दीवार पे अ कुछ फ्रेम्स लगे हुए है।

और यहां पे दरवाजा खुला है और वहां पे घास उगी हुई--

वहां पर लाइट जल रही है और वहां से बहुत सारे पेड़ पौधे भी नजर आ रहे हैं।

व्हाइट कलर के हैं और यहां पे एक अअ लकड़ी का कोई पुल सा बनाया हुआ है आर्टिफिशियल का।

ये कोई जंगल का रास्ता जो कि मेन में यह निकाला गया है।

ये यहां पे गेट है और यहां पे बहोत सारे पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं।

यहां बी केबिन है और यहां बी टेबल पे कुछ पाइप्स वगैरा है।